देते हैं सर्विस जिसका डॉक्टर है डॉक्टर राजेश कुमार जो एम फ़िल फिजिसिअन हैं यह एम एम.बी.बी.एस. किये हुए हैं जो बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हैं।

पहाड़ जैसा नज़र में आ रहा है काफी पेड़-पौधे भी हैं जो छोटे-छोटे हरयाली ही हरयाली नजर में आ रहा है यह काफी लग रहा नीचे पानी भी नजर में आ रहा है।

यह देखिए यह बहोत ही बड़ा बिल्डिंग यहाँ बनाया जा रहा है यह इसे एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जा रहा है जो बहोत ही अच्छा लग रहा है हर --

यह एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है जिसका यह मेन गेट है यहाँ का डेकोरेटिंग बहुत ही अच्छा किया गया है इस जगह का नाम है सुखदेव प्लेस ।

यह देखिये यह एक दुकान है यहाँ कई प्रकार के खिलौने मिलते हैं बहुत ही अच्छे-अच्छे खिलौने मिलते हैं सस्ते दामों में अच्छे-अच्छे खिलौने मिलते हैं ।

ये यहाँ दूध मिलता है जो दीपक सुधा डेरी एवं जनरल अस्टोर स्टोर है यहाँ हर प्रकार के मिलते हैं।

जो बहोत ही अच्छा लग रही हिन्दुओं के लिए ये अ महान अस्थान है।

देखिए यहाँ काफी बिल्डिंग बने हुए हैं जो काफी अच्छे कुछ यहाँ दिखाया गया है जहानाबाद कॉलेज जहानाबाद यह बहुत ही पुराना कॉलेज है --

तेईस को बना हुआ है जो बहुत ही पुराना --